उधर एक हर भरा सा गार्डन दिख रहा है बड़े-बड़े पत्ते दिख रहे हैं फूल दिख रहे हैं।

चार मशीने रखी हुई है एक मिरर दिख रहा है।